यह एक मस्जिद है जहा मस्जिद के अंदर जाने के लिए सिडिया बनी हुई है सीडियोंके बाहर एक गेट बना हुवा है गेट के ऊपर उन्नीस सो साठ लिखा हुआ है।

यह एक मस्जिद हैंयह मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है तथा सर पर व्हाइट केप लगाया हुआ है बगल में टॉवर है।